भीड़-भाड़ बहुत ज्यादे होता है। यहाँ पर बाज़ार भी लगता है।

ये गोरखपुर राजघाट का ये पुल है। यहाँ पर धांत --

हम बता नही सकते हैं कहाँ के पहाड़ हैं लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

मंदिर में बहुत ज्यादा मेला लग रहा है खिचड़ी का मेला भी --

ये स्कुल है। यहाँ पर बहोत अच्छा पढ़ाई भी होता है लेडीज जेंट्स दोनों पढ़ते हैं।

ये गोरखपुर का ये सीन है तारामंडल है पार्क हैं।